और ब्लू कलर के ऊपर बोर्ड्स पड़े हैं पेन पड़े हैं।

यहाँ पे एक अ वाइट जेंट्स खड़े हैं जिन्होंने वाइट टीशर्ट डाली हुई है।

और विंडो पे पेंट कर रही है।

और सीमेंट की कुछ स्लाइड्स पड़ी हैं।

कटरिया ब्लड पड़ा है और साथ में उसने कुछ रखने का रखा हुआ है।

और पीछे साइड में दीवारे दिख रही हैं। ग्रीन अ सॉरी येलो ग्रीन पिंक कलर की --

जोड़ियाँ बनी हुई हैं और एक सर्किल में दरवाजा बना हुआ है जिसपे --

जैसे की मैं इस फोटो में देख रहा हूँ राधा कृष्ण जी की फोटो है।

हैलो से ही चबूतर बन रहा है और हरी लाइट की बती घिस रही है और --